यह अपने आत्मा को शान्ति देते हैं। यहाँ पे शांत से आके बस --

बच्चे आके यहाँ अत्शिबाज़ी ना करे। इसलिये यह ग्रिल लगा --

ये हमारे पास के सबसे अच्छे जिम है। यहाँ यह जिम में अच्छे - अच्छे बॉडी बिल्डर --

है। देखने का जो शानदार इलाज है वो आप देखने में है। वहाँ --

स्व्रात्रा निकलते हैं। जिसमें काफी लोग भीड़ होते हैं। बहुत दूर --

पढ़ाई करते हैं। अपने सलामी और भी सारा कुछ मतलब ये स्कूल बहुत अच्छे हैं।

ना भी गाँव हो सारा लोग इक्कठे होते हैं।

और बहुत दूर - दूर से लोग भी अदर दूसरे देश के भी --

यहाँ पे ज्यादातर लोग विदेश के भी होते हैं और यहाँ पे बहुत अच् --

पनीर प्याज सभी आइटम हो बटर रोटी तंदूर रोटी --

आप ऐसे देख रहे है पुराने जमाने का टाइप राइटर है और --

सारे जितने भी एम्प्लॉय हैं सबको ये कम्पनी तरफ़ से दी है ये शानदार चेयर है।

ये हमारे टाउन के बस स्टैंड टाउन बस स्टैंड है। यहाँ --

इसको बनाये हैं जिसमे बनाने मे कम से कम तो चार से पांच साल लग गये थे।

यहाँ पे गोल्ड के सारे आइटम वगेरा मिलते है नेकलेस हो गिया हेयर रिंग हो गिया।

सौ किलो मीटर डिस्टेंस पड़ती है और यह एट्टी फाइव मीटर की --

ये पार्क में जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट् हैं मोर्निंग में आते है।